ये जंगल का एरिया लग रहा है बट यहां पे--

यहां पे एक लड़की डांस करती हुई नजर आ रही है।

यहां पे यहां पे काफी सारे बैलून वगैरह गुब्बारे लगाए गए है।

लोहे का पड़ा हुआ है और एक बड़ी सी यहां पे--

यहां पे काफी सारे बेड रखे हुए हैं ऊपर फैन लगा हुआ है दो-तीन फैन लगे हुए है।

जहां पे काफी यहां पे बेड रखे हुए हैं बेड में चादर बिसी हुई है।

और भी यहां पर काफी सारा सामान रखा हुआ है।

यहां पे बस खड़ी हुई है बड़ी बस यहां पे खड़ी हुई है।

और जिम करने के सारी मशीनें यहां पे रखी हुई हैं बैठने के लिए कुर्सियां भी रखी हुई है।

यहां पे काफी सारा एरिया पड़ा हुआ है पहाड़ का--

यहां पे ऐसे लग रहा है जैसे कि ऊपर से यहां पे रोड निकाली गई हो और यहां पे सामने--

पीछे साइड यहां पे काफी सारी स्कूल बस खड़ी हुई है।

लैपटॉप रखा हुआ है कंप्यूटर जिसे बोलते है।

और सामने यहां पे थोड़ा सा लैपटॉप दिखाई दे रहा है।

यहां पे बकरियां दिख रही हैं जो कि जाली के अंदर यहां पे बकरियां हैं जिस जो एक--

यहां पे काफी स्कूटर वगैरह खड़ी हुई हैं एक स्कूटर में दो लोग एक लोग चढ़ा--

यहां पे मुर्गी पालने के लिए मुर्गी का मुर्गी फार्म बनाया जा रहा है।

इसमें से सामने एक ड्रम रखा हुआ है पर उनके खाने पीने के लिए पूरी यहां पे व्यवस्था की जा रही है।

पूरा पहाड़ दिख रहा है और सामने थोड़ा सा यहां पे हरी भरी घां--

यह बड़ी सी मोटर रखी हुई है किसी चीज की मोटर है ये।

और यह लंबा-लंबा एक गिजर जैसा रखा हुआ है।

बहुत खूबसूरत यहां पे डिजाइन की गई है सजावट भी की गई है।

लाइट का काम यहां पे हो रहा है जो कि तार वगैरह कुछ काट रहा है।

सामने यहां पे बहुत सारा टच फार्म वगैरह बने हुए है।

यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है ऐसे लग रहा है जैसे--

यह जिम सेंटर है जहां पे जिम किया जाता है बच्चे बूढ़े --

यहां पे लोग भी हैं बहोत सारे लोग हैं बच्चे हैं जो खेल रहे हैं लोग हैं बैठे हुए है।

और सामने चारों साइड यहां पे पेड़ ही पेड़ है पूरे बड़े-बड़े पेड़ यहां पे दिख रहे है।

ये नदी है नदी के बगल में यहां बहोत हम्म ऊंचाइयों में मेड़ बनी हुई है जिसे --

मेड़ में का ऊंचाइयों में पार डाला गया है मेड़ जिसे बोलते है।

यह नई स्कूटी लग रही है जो कि कार्टून और पन्नियों से पैक की गई है और बांधी गई है।

यहां पे बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं सभी बच्चे ड्रेस में है।

यह एक शॉप लग रही है जहां पे काफी अंदर सामान रखा हुआ है बाहर जो शीशे से दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत--

सामने से रोड निकली हुई है रोड में काफी वाहन वगैरह भी--

यहां पे डॉक्टर का सारा सामान रखा हुआ है जो एक डॉक्टर का रखा होता सारी मशीनें --

यहां पे एक पौधा है जो बड़ा सा पौधा लगा हुआ है और उसके बाद फिर काफी हरे-हरे पौधे छोटे-छोटे लगे हुए हैं डिजाइनदार यहां पे बनाया गया है।

गमला के आकार का यहां एक यहां पे पौधे लगाए गए है।

सामने अगल-बगल यहां पे घर है घर बने हुए है।